ये स्टेशनरी दुकान है इसपे जो आदमी बैठे हुए हैं पर्पल कलर का शर्ट पहने हुए हैं और गॉगल्स लगाए हुए हैं।

यह एनिमल हॉस्पिटल है जिसमे एक --

और जो कि तालाब में चल रही है और जो कि जलकुम्भी है।

एक रंग बिरंग कपडें पहने हुए हैं और लोग घूम भी रहे हैं और --

यह एक एक्सरसाइज रूम है जिस पर एक आदमी एक्सरसाइज भी कर रहा है जो की --

यह एक फिल्टर वर्क शॉप है जिसमे --

और एक में तीन चार लोग बैठे भी है जहाँ पे खाने पिने का आनंद ले रहे हैं और बात-चीत भी कर रहे हैं।